किसी नदी के स ऊपर बने हुए पुल का फोटो दिखाई दे रहा हैं साइड में निचे नदी का पानी दिखाई दे रहा हैं पुल के आइत साइड कुछ दिवाईढर बिल्डिंग बनी हुई दिखाई दे रही हैं सामने के साइड में कुछ च डब्बा सा कुछ दिखाई दे रहा हैं।